आठ आठ पोधे है और बहोत सारा अच्छा बाहर से दिख रहा है।

ये जिम है और यहाँ पे तिन चार मशीन भी है।

यहां पे आप चाहो तो गेम भी खेल सकते हो क्रिकेट भी खेल सकते हो।

यहां दूसरी बस का वेट कर रहे होंगे बैग्स ले के खड़े हुए--

यह मोबाइल कि शॉप लग रही है गिफ्ट टाइम ग्रेट लिखा हुआ है।

बहोत सारे और एक शॉप भी काफी अच्छी है एक इन्शान भी दिख रहा है जिसका--

ऐसे पोधे है आस पास पेड़ है।

पीछे पता नी कुछ ऐसे बेठने कि जगह होगी और रास्ता भी पूरा--

एक और भी इंसान है जिसका शूज दिख रहा है पैर दिख रहा है ऐ जो इंसान लेटा हुआ है उसने ब्लैक कलर का पहना हुआ है--

ये मतलब अ गाड़न लग रहा है खुला ग्राउंड लग रहा है।

और बीच में पता नहीं क्या कुछ स्टेन है किस चीज का है वो तो पता नहीं है।

ये कोई हॉल लग रहा है जैसे की पता नहीं खुला सत्संग का हॉल है या हॉस्पिटल का है पता नहीं क्या है--

ऊपर पंखे भी लगे हुए है चार पांच पंखे भी दिख रहे है काफी लोग भी आये हुए ह सबने साड़ी भी पहनी है अलग अलग कलर की--

वो कुछ राउंड्स सा पेकिंग रखा हुआ है और दो तिन लोग खड़े भी है एक बेठा हुआ भी है।

बिल बनाता होगा शायद देखने आए शॉप तो काफी अच्छी लग रही है ऊपर लाइट की रोशनी तो बहुत अच्छी लग रही है पी_ओ_पी देखो कितनी मस्त लग रही है।

कार का शो रूम लग रहा है ये कार शो रूम है।

अभी यहां पे न्यू न्यू कार निकली लेबल बंधा हुआ है ब्लैक कलर की कार है किसी ने नई ली है एक्सटर लिखा हुआ है यह पे--

कमु कम डेप में है प्रोविजन --

दो पेर है जो पकड़ के खरा है आस पास ग्राउन है।

पता न जंगल जैसा लग रहा है पेड़ है ग्रीन कलर के लग रहे है।

आपस में मोबाइल देख रहे है या बात कर रहे है वो समझ नी ये क्या आ रहा--

ऐसा लग़ रहा है दो तीन घर है। एक सीडी भी दिख रही है ऊपर से जा सकते हैं सीडी से--

यहां रखा हुआ एक कृति योगा योग क्लास है।

ऐसा कुछ लग रहा है ऊपर तीन तीन बने हुए हैं पता नहीं क्या बना हुआ है पेड़ एस लटकते हैं ऐसा कुछ बना हुआ है ऐसा कुछ लग रहा है।

एक इंशान खड़ा है पता नही वोचमेन है क्या है उसने मास्क लगाया है।

ये बिच लग रहा है पानी पानी लग रहा है और बेरी लग रही है दो शायद बेरी लग रही है।

ये एक बिच है फोटो में आस पास अ ग्रीन कलर कि पेड़ है पोधे है।

फलानी मतलब वल्डिंग हे यहाँ पर कुछ ऑफिस लग रही है।

यह कोई स्कूल है ऐसा कुछ लग रहा है एक लडकी है।

लडकी शायद बच्चो को स्कूल छोड़ने आइ है ऐसा लग रहा है।

दो चट्टनी है ग्रीन कलर कि चट्टनी है एक रेड कलर कि चट्टनी है।

और पता नी क्या राउंड राउंड का मतलब चिला है उपमा है क्या है सेंडविच है।

ये कोई रोड है जो लोग आ जा रहे है।

ऑटो है एक्टिवा लेके आइ है पीछे लडकी है सा--

ये कोई राउंड है कोई चलने का रास्ता लग रहा है।

टाट हो जाईगी अभी बारिश ऐसा कुछ लग रहा है रोड आधा तो खाली लग रहा है आधा भरा हुआ है।

क्लांस क्लगंस लिखा हुआ है बाहर और--

लगता है स्टेज है डेकोरेशन किया हुआ स्टेज है।

ये पता नहीं क्या है फोटो में लग रहा है पर लोग खड़े है तीन चार और बाइक थोड़ी सी दिख रही है और कार है।

पता नहीं ऑफिस है या लॉबी है क्या है वो फोटो में समझ नहीं आ रहा है मुझे बाकि देखो दीखने में तो अच्छा लग रहा है।

और को अलग अलग मतलब आइसक्रीम लगाई है शायद आइसक्रीम बार है।

ये कोफ़ी बार है ओ पता नही पर पोस्टर में ऐसा लग रहा है दिख रहा है।

पिलो हय और चेयर दिख रही है लाईट चालु है पंखा है।

और तो समझ नहीं आ रहा है क्या है डस्टबिन रखा हुआ है दो सीढियांएच--

नौ चेर है और पता नि स्टैंड तो नि लग रा हैं खाने पीने का--

शोपिंग क है शोपिंग कहा है यहाँ शॉप है।